और यहां में आदमी का सामने में कोल भी है।

और मिडिल वाला घर में कुछ कपड़ा भी तंगा के रखा हुआ है।

और दरवाजा जो है एक शीशा से बनाया हुआ है।

इस फोटो में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

और ये सामने में व्हाइट व्हाइट से दिखाई दे रहा है।

और कुछ लाइट बल्ब भी जलाके है।

इस इमेज में एक सुंदर सा नजारा नजारा दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारा घर भी दिखाई दे रहा है।

और दूर में एक घर दिखाई दे रहा है।

पेड़ के ऊपर वाला टीन आज पूरा कला हो गया है।

और यहाँ में इलेक्ट्रिक वायर बढ़ती दिखाई दे रहा है।

और ये जगह बहोत ही खूबसूरत दिख रहा है।

और इसके पिछे दो ठो बड़ा सा घर है।

ये इमेज में एक बड़ा सा घर है।

और घर को जो चारों तरफ से दीवार लगाया हुआ है।

और इन तीनों का बीच में एक बड़ा सा पेड़ है।

और सामने में बैंबू को रस्सी से बांधा हुआ है।

इस फोटो में एक छोटा सा गेट दिखाई दे रहा --

पीछे में बहुत बड़ा जंगल है।

इस फोतो में एक दुकान दिखाई दे रहा है।

और वहां में एक कलर का चेयर भी रखा हुआ है।

अह सब का सामने में दो इलेक्ट्रिक पोल्स और उसका वायर दिखाई दे रहा है।

ये इमेज में एक पुराना सा बरा सा घर दिखाई दे रहा है।